एक नापने का टेप दिख रहा है हरे कलर के पौधे दिख रहै है।

एक पंखा दिख रहा है एक टेबल दिख रहा है टेबल पर पानी की बोतल दिख रही है।

उनके हाथ मे ढ़ोकल दिख रहा है।

हरे कलर की पतों पत्तों की डिजाइन दिख रही है एक दिवार दिख रही है।

कुछ लहंगे दिख रहे है अ कुछ साड़ियां दिख रही है।

एक चुन्नी दिख रही है एक सफ़ेद कलर का परचा दिख रहा है।

क बेली की एक झोपड़ी दिख रही है।

रेड और येल्लो कलर की फिसल पट्टी दिख रही रही है।

ये एक दिवार दिख रही है दिवार पे जीसस की पेंटिंग दिख रही है।